सामने चट्टानों का एक मंदिर दिखाई दे रहा है। साथ ही एक पेड़ दिखाई दे रहा है जिसमें पत्ते लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। यह मंदिर बहोत प्राचीन नजर आ रहा है।

सामने एक खंभा नज़र आ रहा है जो कि कुतुब मीनार की तरह दिखाइ दे रहा है। साथ में एक झंडा लगा हुआ है और एक बिल्डिंग बनी हुई है।

सामने एक तालाब दिखाई दे रहा है जिसके सामने एक मंदिर के जैसा मकान बना हुआ है उसपे मंदिर की छोटी जैसे स्तर बने हुए हैं ।

यहाँ सामने एक मंदिर बना हुआ हैं जोकि रंग बिरंगे कलर से पैंट किया गया है और उसके सामने गेट नंबर चार भी लिख हुआ है।